और चाय बनाया जा रहा है।

इसके ऊपर कुछ तारें लगे हुए हैं।

जैसा शिमला मिर्च भिंडी --

ये फोटो एक छोटे सी सब्जी की दुकान की है जहाँ पे कोई --

और बहुत रौशनी हो रही है और यहाँ पे बहुत सारे लाइट लगाए गए हैं और ये मेला बहुत ही बड़ा मेला है और यहाँ पे भीड़ भी बहुत ज्यादा होती है।

ये पिक्चर एक उम्म मेले की है जहाँ पे बच्चों के लिए अ बहुत प्रकार की झूले लगे हुए हैं और यहाँ पे बहुत सारे औरत बैठ के --

ये बच्चों का गेम देख रहें हैं और यहाँ पे मजा कर रहें हैं।